ये जगह में दो गाड़ी दिखाई दे रहा है।

गाड़ी बाहर में दिखाई दे रहा है।

उसका पीछा में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

एक कार भी दिखाई दे रहा है।

और सामने में फूल दिखाई दे रहा है।

दो मोबाइल भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी ने ब्लू कलर टीशर्ट पहन के दिखाई दे रहा है।

टेबल भी बहोत ज्यादा दिखाई दे रहा है एक पेपर भी दिखाई दे रहा है।

यह जगह जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

यह जगह में दो लड़का दिखाई दे रहा है।

चोता चोता बोतल दिखाई दे रहा है।

एक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।